ये कंस्ट्रक्शन का कम हो रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कम चलता है शुरू से प्रोसेस होती है।

यहाँ पे आते हैं अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ अदरवाइज फॅमिली मेम्बेर्स सभी लोग आते हैं।

लोग वहाँ पे पहुंचते है। श्रद्धालुओं की भीड़ होती है जो अपनी- अपनी आस्था ले के वहाँ पे पहुंचते हैं।

जो इन्सान अपनी पूर्ति के हिसाब से कपड़े खरीदता है जो मिडिल क्लास फॅमिली से बिलोंग करता है।

तरह तरह के प्रोग्राम किये जाते है उन्ही मे से एक ये बर्थडे प्रोग्राम होता है जिसको जन्मदिन कहा जाता है।

समाज में घूमने में ताकि उन्हें एक ऐसा --

तख्तों का मजा ले सकें खुली हवाओं का मजा ले सकें। वातावरण में घूमते हैं।

ये बच्चे बैठे हुए है। और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे है। अनेक-अनेक प्रकार के चार्ट पे चित्र बना रहे है। और उसमे रंग भर रहे हैं।